और वो जहा पे बैठा हे वहां पे सूखे हुए ढेर सारे पत्ते पड़े हुए हे.

और यह आदमी आसमानी कलर का सर्ट पहने हुए है.

यह होरीजन होंडा का ऑफिस है और यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है.

यह एक खिलोने की दूकान हे और बोहोत सारे इसमें खोलोना रखा हुआ हे.

उम यहां पे बहुत सारे जानवर भी नजर आ रहे हैं.

एक आदमी ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू जींस में खड़ा है.

एक ब्लू कलर का जीन्स और एक खाखी कलर का जीन्स पहना हुआ है।

यहाँ पर बहोत सारे गुबारे हे.

सारे विदाउट ड्रेस में ही है.

टी-शर्ट और जींस पे हैं सैंडल पहने में कुछ जूता पहने हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं.

इसमें आठ चेयर लगी हुई है।

स्विच बोर्ड हे साइड मे और यहाँ पे दो प्लांट रखे हुई हे शो पीस के लिए.

और उसके बगल में सीढी जा रही है ऊपर की ओर.

यहाँ तेल गिरता हुआ नजर आ रहा हे.

जिसमे की अभी अम्म् दस बारा लाइन ईटा से दीवाल खड़ा हो रहा हे.

ए बहुत सारे पटरे रखे हुए है --

दो शो में घोड़े रखे हुए हैं.

ये हिंदुस्तान साइकिल स्टोर है.

इसका पिन नंबर दिया हुआ है यहां पर भारतीय डाक घर पोस्ट ऑफिस .

वहां पे एक बोतल रखा हुआ है और सारे संगमरमर और टाइल्स से बना हुआ ये मंदिर है.

इसके सामने में एक बड़ा सा पेड़ है और पेड़ के नीचे चबूतरा भी है.

लेपटॉप पे काम कर रहे हे उनके बेग हे हेलमेटस हे ऊपर पानी का बॉटल हे.

यह एक अ ब्रिज जैसा प्रतीत हो रहा है.

जोकि ब्लेजर पहने हुए हे अ और जेंट्स शर्ट पे ही हे व्हाइट कलर का शर्ट हे और हूँ यहाँ पे बोहोत सारे खाने का समान बिक रहा हे.